गेट काफी अच्छा लग रहा है।

क्यूंकि ये विकलांगो की बैठने के लिए ये जो चेयर है --

और यहां पे दुल्हे को सजाया जाता है बाल काटा जाता है दाढ़ी बनाया जाता है।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में यह जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यह किसी रेस्टोरेंट के अंदर टेबल पर रखे गए डिस्क की फोटोज़ हैं।

जिसमें दो तरह के चम्मच हैं और इसमें चार पांच तरह की खाने वाली चीज है थोड़ा-थोड़ा।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में ये जो तस्वीर में आप दिखाई पड़ रहा है मुझे ये पंडाल बना हुआ है।

अंदर सरस्वती माता की मूर्ति है जो एक --

कि ये बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट है इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें हैं।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि आगे एक बड़ी सी नदी है।

और पीछे से एक आदमी इसका सेल्फी ले रहा है फोटो ले रहा है कि देखो कैसा दिख रहा है मेरा बाल ।

लेडीज वेयर कुर्ती ब्राइडल साड़ी साड़ी लहंगा तरह-तरह की चीजें मिलती हैं यहां पे।